ये कार का नाम ग्रोजा कार है ये बहोत ही सुंदर है इसको--

अलग अलग रंग के परदे लगे हैं यहां जो की बहुत सुंदर है इसको व्याह शादी में लगाया जाता--

यह एक तस्वीर दिखाई गई है ये तस्वीर एक ट्रैक्टर ट्राली की है जिसमें इस ट्राली में--

ए एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें बहोत सारे लड़कियां और लड़के खड़े हुए हैं। ए तस्वीर एक दुकान की है ये तस्वीर में है।

ये तस्वीर एक शादियों वाले तस्वीर है ये तस्वीर में बहोत सारी लाइटे जग रही है और डी_जे लगी हुई है।

इस पार्किंग में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई गाड़ियां बहोत ही सुंदर है ये।

इसमें बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं यहां लोग बैठते हैं।

ये इस तस्वीर में बहुत ही सुंदर चादर है जो कि के ऊपर लगी हुई है यह तस्वीर में।

ये एक तस्वीर दिखाई गई है ये तस्वीर एक बाजार की है जोकि बहुत सारी भीड़े लगी हुई हैं।

बहुत ही सुंदर तस्वीर है जहां बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में लोग खेलने के लिए आते जाते हैं और ग्राउंड में खेल के चले जाते हैं यह तस्वीर बहोत ही अच्छी होती है और बहोत ही सुंदर होती हैं।

इस तस्वीर को देखकर लोग पूजा करते हैं ये तस्वीर बहुत ही सुंदर और अच्छी होती है ये इस तस्वीर के आगे लोग़ पूजा करते हैं।

जोकि एक तस्वीर दिखाई जा रही है जोकि एक बहोत ही बढ़िया--

एलोवेरा पकड़ा हुआ जो कि एलोवेरा बहुत ही लाभदायक--

बहुत लाभदायक होती है ये तस्वीर में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो की सुंदर है।

ये एक तस्वीर दिखाई नही है ये तस्वीर बहुत सुंदर है ये तस्वीर पंछियों की तस्वीर दिखाई गई हैं।

ये साइकिल में बच्चे खेलते हैं खिलौने बहुत सुंदर है साइकिल भी बहुत सुंदर है यहां बच्चे--

अपने पेट के लिए ये लोग अपना काम करते है।